ये पार्क मे छायादार वृक्ष भी खड़ा है और राष्ट्र तिरंगा का झंडा लगा हुआ है और है --

इस वीडियो मे मछली बाजार लगा हुआ है और महिलाएं --

उम्म गाड़ी सफाई करने का बहुत शौख रखता हैं।

कॉलेज की इमारत है और इस इमारत से हज़ारो बच्चो को --

इस वीडियो में सामने एक टोकरी में आलू रखे हुए हैं।